यह एक रेस्ट्रोन है रेस्ट्रोन के ऊपर लाल कलर में कुछ लिखा है निचे --

यह एक प्लेग्राउंड है। उसके पास मे स्टेडियम है। कुछ खिलाड़ी --

योगा कर रहे हैं। टीचर योगा सीखा रहे है। बच्चों उनके पीछे --

पोस्टर लगाए पोस्ट के पीछे रेड कलर का ए --

एक सफेद कलर की मूर्ति है और ऊपर ग्रीन कलर का --

यह कुछ साँचे से बना रही है लाइट के उजिरे में।

ठेला लगा है कुछ ऑटो आ रहे है कुछ खड़े है कुछ इंसान बाइक से जा रहे है कुछ पैदल जा रहे हैं।

से बस चलती हैं।

यहां पर बैठने के लिए पूरी व्यवस्था तथा आराम --

यहां का लंबे के लंबे रूम --

क्रीम कलर के सफेद कलर के परदे से --